पर्ल में कमेंट्स पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे पर्ल में कमेंट्स मैं उबंटु लिनक्स 1204 ऑपरेटिंग सिस्टम और पर्ल 5142 का उपयोग कर रहा हूँ
जो है पर्ल रिविजन 5 वर्जन 14 और सबवर्जन 2 मैं गेडिट टेक्स्ट एडिटर का उपयोग भी करुँगा
आप अपने पसंद का कोई भी टेक्स्ट एडिटर उपयोग कर सकते हैं
आपको पर्ल में कंपाइलिंग निष्पादन औऱ वेरिएबल्स का बुनियाद ज्ञान होना चाहिए
यदि नहीं तो कृपया संबंधित स्पोकन ट्यूटोरियल्स के लिए स्पोकन ट्यूटोरियल की वेबसाइट पर जाएँ
पर्ल में कोड के भाग को दो तरह से कमेंट कर सकते हैं सिंगल लाइन सिंगल लाइन मल्टी लाइन मल्टि लाइन इस प्रकार के कमेंट का उपयोग किया जाता है जब यूजर कोड के सिंगल लाइन को कमेंट करना चाहता है या कोड के भाग की कार्यक्षमता को समझाने के लिए एक लाइन के टेक्स्ट को जोडना चाहता है
इस प्रकार का कमेंट सिंबल के साथ शुरू होता है
यहाँ एक डेमो है
टेक्स्ट एडिटर में एक नई फाइल खोलें
टर्मिनल खोलें और टाइप करें गेडिट कमेंट्स डॉट पीएल स्पेस फिर आपको याद दिलाता हूँ कि एम्परसैंड का उपयोग टर्मिनल में कमांड प्रोम्प्ट को मुक्त करने के लिए किया जाता है और एंटर दबाएँ
अब निम्न कमांड्स को टाइप करें
हाश डिक्लेयरिंग काउंट वेरिएबल एंटर दबाएँ
डॉलर काउंट स्पेस इक्वल टो स्पेस 1 सेमीकॉलन एंटर दबाएँ
प्रिंट स्पेस डबल कोट्स काउंट इस डॉलर काउंट स्लैश एन क्लोज डबल कोट्स सेमीकॉलन स्पेस हाश प्रिंट्स काउंट इस 1 अब इस फाइल को सीटीएलआर एस दबाकर सेव करें और पर्ल स्क्रिप्ट को निष्पादित करें
टर्मिनल पर जाएँ और टाइप करें पर्ल हाइफेन सी कमेंट्स डॉट पीएल और एंटर दबाएँ
यह हमें यह बताता है कि यहाँ कोई सिंटेक्स एरर नहीं है
अब टाइप करें पर्ल कमेंट्स डॉट पीएल और एंटर दबाएँ
यह निम्न आउटपुट प्रदर्शित करेगा काउंट इस 1 गेडिट पर वापस जाएँ
गेडिट में पहली लाइन पर जाएँ और एंटर दबाएँ
पहली लाइन पर वापस जाएँ और निम्न कमांड टाइप करें
हाश एक्सक्लेमेशन मार्क स्लैश यूएसआर स्लैश बिन स्लैश पर्ल पर्ल में इस लाइन को शेबांग लाइन कहते हैं और पर्ल प्रोग्राम में यह पहली लाइन होती है
यह बताता है कि पर्ल इंटरप्रेटर कहाँ ढूंढे
ध्यान दें हालांकि यह लाइन हैश सिंबल के साथ शुरू होती है यह पर्ल द्वारा सिंगल लाइन कमेंट के रूप में नहीं माना जाएगा
अब मल्टिलाइन कमेंट्स को देखते हैं
मल्टी लाइन इस प्रकार के कमेंट का उपयोग किया जाता है
जब यूजर कोड के भाग को कमेंट करना चाहता है या कोड के भाग का विवरणउपयोग जोडना चाहता है
इस प्रकार का कमेंट इक्वल टो हेड सिंबल के साथ शुरू होता है और इक्वल टो कट के साथ समाप्त होता है
गेडिट पर वापस जाएँ और निम्न को कमेंट्स डॉट पीएल फाइल में टाइप करें
फाइल के अंत में टाइप करें इक्वल टो हेड एंटर दबाएँ
प्रिंट स्पेस डबल कोट काउंट वेरिएबल इस यूज्ड फोर काउंटिंग परपज क्लोज डबल कोट एंटर दबाएँ
इक्वल टो कट फाइल सेव करें इसे बंद करें और पर्ल स्क्रिप्ट निष्पादित करें
टर्मिनल पर टाइप करें पर्ल हाइफेन सी कमेंट्स डॉट पीएल और एंटर दबाएँ
सिंटेक्स एरर नहीं है
अतः पर्ल कमेंट्स डॉट पीएल को निष्पादित करें
यह पहले की तरह ही आउटपुट दिखायेगा काउंट इस 1 यह काउंट वेरिएबल इस यूज्ड फोर काउंटिंग परपज वाक्य को प्रिंट नहीं करता है
यह इसलिए क्योंकि हमने इक्वल टो हेड और इक्वल टो कट का उपयोग करके भाग को कमेंट किया है
आप या तो head cut या begin end का उपयोग कर सकते हैं
ये पर्ल द्वारा उपयोगित विशेष कीवर्ड्स नहीं है
कृपया ध्यान दें यहाँ टो चिन्ह से पहले और हेड कट बेगिन या इंड शब्द के बाद आगे या पीछे कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए
एक बार फिर से टर्मिनल खोलें
और टाइप करें गेडिट कमेंटसेक्सम्पल डॉट पीएल स्पेस और एंटर दबाएँ
निम्न कमांड्स को टाइप करें जैसे स्क्रीन पर दिखाया गया है
यहाँ मैं दो वेरिएबल्स फर्स्टनम और सेकेंडनम को घोषित कर रहा हूँ और उनके लिए कुछ वैल्यूज निर्दिष्ट कर रहा हूँ
तब मैंने यहाँ इस भाग को कमेंट किया है
अब मैं इन दो नंबर्स को जोडूँगा और एडिशन नामक तीसरे वेरिएबल के लिए वैल्यू निर्दिष्ट करूँगा
अब मैं प्रिंट कमांड का उपयोग करके वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूँ
फाइल सेव करें औऱ टर्मिनल पर पर्ल स्क्रिप्ट को निष्पादित करें
टर्मिनल पर टाइप करें पर्ल हाइफेन सी कमेंटसेक्सम्पल डॉट पीएल एंटर दबाएँ
यहाँ कोई सिंटेक्स एरर नहीं है
अतः पर्ल कमेंटसेक्सम्पल डॉट पीएल को टाइप करके स्क्रिप्ट को निष्पादित करें एंटर दबाएँ यह निम्न आउटपुट प्रदर्शित करेगा एडिशन इस 30 यह हमें ट्यूटोरियल के अंत में लाता है
यहाँ हमने सीखा पर्ल में कमेंट्स जोडना
नंबर के स्क्वेर को पता करने के लिए पर्ल स्क्रिप्ट लिखना
सिंगल लाइन कमेंट और मल्टि लाइन कमेंट का उपयोग करके कोड की कार्यक्षमता को समझाना
निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें
यह स्पोकन ट्यूटोरिययल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसको डाउनलोड करने और देख सकते हैं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
अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट स्पोकेन हाइफेन ट्यूटोरियल डॉट ओआरजी पर लिखें